ज़मीन दिखाई दे रही हैज़मीन पे गिट्टियां पड़ी हुई है ब्रिज है ब्रिज में पीलर बने हुए है जो कि पानी के अंदर बने हुए है।

बड़ा सा स्टेज है एक बोर्ड लगा है लाइट लगी हुआ है स्टेज पर लोग खड़े है पिंक वाइट ग्रीन लाइट लगी हुए है।

चेयर्स रखी हुई है कपड़े टंगे हुए है गाड़ी खड़ी हुई है कांच लगा हुआ है ऑरेंज कलर की दिवाल है सटल

गाड़ियां खड़ी हुई है एक्टिवा खड़ी हुई है व्हाइट कलर की ऊपर ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे एस.बी.आई लिखा हुआ है ग्रीन कलर का गेट है येल्लो कलर की दीवारें है।

डिब्बे रखे हुए हैबड़े-बड़े से खोके रखे हुए है सामान मिल रहे हैएक औरत है औरत के मुंह पे सफेद कॉलर मास्क लगा हुआ है शोरूम है बोर्ड लगा हुआ हैओनिडा लाल कॉलर का।